मुझे स्कूल ईस्कूल दिखाई दे रहा है वो सफेद कलर या लाल कलर का है मुझे साइकल भी गेट भी दिखाई दे रही है पोस्टर भी दिखाई दे रहा है दूर्वा दिखाई दे रहा है।